और साथ में इस के सामने कुछ डायरी जैसा कुछ है जिसमे कुछ लिखा हुआ है।

बड़ा यहाँ बहुत बड़ा ये पहाड़ है और सामने आसमान का कलर भी नीले कलर का दिखाई दे रहा है।

सामने एक शॉपिंग मॉल है जोकि बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे बहुत से बड़े-बड़े सीसे लगे हुए है बहुत से मूर्तियाँ है जिसे कपड़े पहना कर यहाँ पर खड़ा कियाा हुआ हैं।

यहां दो आदमी है जो की नांव चला रहे है ये सुंदर है बड़ी सी नदी है उस नदी के

यहाँ पे एक योगा सेण्टर जहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ है जोकि योगा कर रही है योगा करते हुए ये लोग बहुत ही।

बहोत ही अच्छा लग रहा है बड़े ब्रिज में बड़े बड़े यहा पे बहुत से लोग भी है जोकि ब्रिज पर खड़े है बहुत सुंदर लग रहा है देखने में यहाँ से--

डेरी का बड़ा सा बोड लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत से सामानय है जोकि यहाँ पे बिक रही है देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है।